जिस बेंच में तीन-चार लोग सोए हुए हैं। कौन-कौन अपने सामान लेकर सोया है।

चुकी बहोत महंगा है बहोत अच्छी तरह से तैयार हुआ है।

दिवाल भी है बहोत अच्छे तरह से सयाया गया है कांच का है।

और यहां एक ब्लू कलर का बाल्टीन है जो कि बुलाया गया है इसको।

ये एक होटल है जाए की बहोत सारे लोग हैं बैठे हुए हैं भोजन कर रहे हैं।

अ ये बहोत काफी में बहोत बड़ा है ब्लू वाइट ग्रीन से--

ये एक मारुति शोरूम हैं जहाँ की बहोत अच्छे अच्छे गाड़ी मिलता हैं यहाँ पे कार बाइक स्कूटी --

और ये है संबलपुर की में है और यहां एक डस्टबिन भी रखा गया है।

और यहां का जो लाइट है डेट का वह भी सुंदर लग रहा है यहां अच्छे अच्छे जिनिस मिलती हैं।

यहां गड्ढा कोड़ाये जा रहा है यहां एक जे_सी_बी गाड़ी है।

और ये रास्ता देखने में बहोत सुंदर लग रहा है यहां एक बकरी या कुत्ता है।

लगता है ये बहोत बड़ा रेस्टोरेंट ऐसा कुछ है।